तो देख सकते हैं आप लोग ये एक दुकान है जो कि यहाँ पर सामान रखा हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है झाड़ू चेयर बर्तन जो कि यहाँ पास--

जो कि खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है ग्लास भी है यहां स्टायलिश यहां टेबल भी हैं अच्छा लग रहा हैं जो कि जो कि ब्लू लाइट भी लगा है अच्छा लग रहा है ब--

जो की नदी फदी को देख सकते है आप लोग --

तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्डियन ऑयल का एक पेट्रोल टैंक है जो कि यहाँ पास बहुत ही साफ सुथरा है अच्छे से ओर यहाँ रोड के किनारे है।

तो आपलोग देख सकते है कितना अच्छा ऑफिस है जो की ड्रेसिंग टेबल से सजी हुई है और चारो-चारो और टेबल ही टेबल है और कितना अच्छा यहाँ पर समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड है।

--आप देख सकते ये आप लोग शासकीय महाविद्याल बरपाली का जिला कोरबा छत्तीसगढ़ भी लिखा है।

कार्स भी खड़े हैं और कितना पेड़-पौधे दिखाई दे रहे रोडियो के रोड के किनारे हैं बहुत अच्छा लग रहा हैं।

जो कि बाइक पे दो युवक दिखाई दे रहे हैं जो कि जा रहे हैं और इधर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हैं जो कि शीशा जो कि एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा हैं और एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा हैं।

ये एक डेरी हैं जो की आप देख सकते हो आप लोग जहाँ पर डेरी का हर तरीके का चॉक्लेट भी मिलता है देख सकते हो आप जैसे यहाँ पर दिख रहा है कुरकुर वगैरह और डेरी पर चॉक्लेट का लोगो भी दिख रहा है। जो की बहोत --

कुछ दवाइयाँ भेजे रहे जो की दवाई भी दिखाई दे रहा है।

वहाँ मन्दिर में पूजा करने यात्री आए है जो कि बहुत टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आए हैं।

ये भी एक कपड़ा दुकान है जो कि देख सकते हो आप लोग पूरा सामने कपड़ा चादर वगैरह है जो कि कम्बल भी वहाँ पास रखा हुआ है जो कि हरे का मॉल लिखा है लिखा है जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा यहां पास है ।